इस ए_सी की कंपनी का नाम एल_जी दिखाई दे रहा हैं इसके नीचे एक कूलर दिखाई दे रहा हैं।

यह तस्वीर एक कन्फेक्शनरी की तस्वीर नजर आ रही है।

झील के किनारे कुछ पेड़ पौधे नजर आ रहें हैं।

जिम में बहोत सारे जिम के उपकरण दिखाई दे रहे हैं।

जिसमें बहुत ही सुंदर टेंट लगाया हुआ--

इस तस्वीर में दो लाल रंग की कुर्सियां भी दिखाई दे रही है।

इसके अंदर एक बैड दिखाई दे रहा है।

यह तस्वीर किसी ऑफिस की तस्वीर नजर आ रही है।

दस्तावेज रखे नजर आ रहे हैं।